हमे यहाँ पे एक बड़ा सा शॉप दिखाई दे रहा है सामने और एयरटेल फोर.जी का साइन लगा हुआ है इधर बोर्ड का कुछ लोग आते जाते नजर आ रहे है बाइक खड़ी हुई है और अंदर काफी सारे समान लगे हुए है।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

यहाँ पे हमे एक लेडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो मायंक मे कुछ बोल रही है ओर उनके पीछे एक रेड कलर का चैर लगा हूआ है ओर वहां पे ईशा मसी वाला जो है तंगा हूआ हैं।

हमे यहाँ पे टेबल मे कुछ लोग बैठे हुए नज़र आरहे है ।

यहाँ पर मे भी बहुत सारे समान रखे हुए नजर आ रहे है जिसमे एक चेयर एक निली एक स्पॉट बाईक--

यहाँ हमे एक कन्स्ट्रक्शन का काम चलता हुआ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पिलर भी रखी हुई एक बाइक है जिसमें हैलमेट है ईट रखे हुए है मिट्टी रखे हुए हैं।